तथा अगल बगल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है | भूमि तथा जल दिखाई दे रहा है ऊपर खुला आस --

और यह फोटो भूरे रंग के है। इसके नीचे तथा प्लाई बोर्ड है भूरे रंग का। अगल-बगल दीवारें हैं सफ़ेद और मेज है।

पोस्टर है आगे अ दिवार पोस्टर के नीचे भी पौधा है तथा दिवार पे ए.सी. भी नजर आ रही है ।

आगल-बगल भी कई दुकानें हैं। भवन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का और भवन हरे कलर --

फोटो में एक इ-रिक्शा दिखाई दे रहा है जो थ्री व्हीलर के तरह है जिसके तीन पहिए है तथा वह लाल कलर का दिखाई दे रहा है ।

यही पे बाउंड्री भी हो रखी है सफ़ेद कलर कि और गेट भी दिखाई दे रहा है छोटा सा सीढ़ी भी है तथा भा सामने एक --

सुन्दर सा सफ़ेद कलर का भवन है। बिल्डिंग है जिस पे कई खिड़कियां भी नजर आ रहीं हैं।